इसमें एक बहोत बड़ा दुकान भी है उसमे में बहोत सारा सामान भी रासन पड़ा हुआ है उसमे मानगो फ्रूटी भी है |

वह चारो तरफ सुल रोड भी है कच्ची रोड उसके बाद उधर भी घर भी भी देख रहा है पानी बहोत है तालाब में।

उसके आगे में आम का पेड़ है मरा हुआ।

पीछे एक माकन न्यू बन रहा है गुलाब फूल भी दिख रहा है।